और यहां एक टेबल भी रखा दिखाई दे रहा है टाइल्स के ऊपर एक दो ग्लास और एक ट्रे भी नजर आ रहे हैं।

और यहां एक सिलेंडर भी नजर आ रहा है।

यहां इस क्रेन के तीन पहिए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर मुर्गा फारम की दिखाई दे रही है।

धन धन सतगुरु लाठी लिए पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं यहां डॉक्टर एम_एस_जी लिखा हुआ है।

यहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

नीचे घास भी नजर आ रही --

कार भी जाती हुई नजर आ रही है।

यहां एक अ छिल बैलेंसर दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक झील की नजर आ रहीं हैं।

यह तस्वीर एक गेट की दिखाई दे रही है। यहां एक कैंपर एम्पर भी नजर आ रहा है।

यह एक सूर्यास्त का फोटो दिखाई दे रहा है।

बीच में एक स्क्वेयर और सर्कुलर टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक स्कूटी भीं यहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।